अ अ सामने एक बांये साइड में एक ऊँचा एक मकान है जिसमें के नीचे बहुत सारी गाड़ियाँ हैं।

यह एक ब बर्गर सिंह का नाम बर्गर सिंह।

और अअअ पढ़ाई करते है नॉलेज गेन करते है ।

और अअ जो चट्टान है जो कि --

चार बुलेट है ये संभवतः बुलेट का शोरूम है ।